पेंटिंग की दुकान जैसी दिखाई दे रही है उसके पास एक कैंपर गाड़ी खड़ी है एक साइड में है पिकअप गाड़ी खड़ी है।

हेयर सैलून पार्लर समझ लो या कुछ और समझ लो वो है।

तस्वीर लगी हुई है बालों की हेयर स्टाइल की और यहां पर लगता है कि कटिंग की जाती है।

लगता है ऐसा कोई गांव या शहर छोटे छोटे--

सरकारी स्कूल हो या सरकारी चिकित्सालय हो जो भी वह दिखाई दे रहा है ऊपर तारों से लाइन दिखा दे रे तारों की लाइट वाली और एक पास में स्कूटी भी --

आगे तीन से चार बच्चे भी खड़े हैं या तो उसमें प्रार्थना हो रही है या कुछ प्रोग्राम --

यह एक महर्षि विश्वामित्र भवन केंद्रीय पुस्तकालय जैसा दिखाई दे रहा है और बाहर एक --

आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे पुल के नीचे भी कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक गाड़ी है गाड़ी फूलों से सजाई हुई दिखाई दे रही है और बाहर साइड में पीछे एक रोड दिखाई दे रही है और --

टेबलें कुर्सियां लगी हुई है और ये ऐसा लगरहा है फाइव स्टार यह रिजॉर्ट है कोई या मैरिज प्लेस भी हो सकता है।

फॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है दिखाई दे क्या रहा है ये मुर्गी पालन का फॉर्म ही है ये एक्जेक्टली इसमें बहुत सारे --

यह एक लाइब्रेरी है इसका लगता है आज उद्घाटन हुआ है सामने एक भगवान की तस्वीर रखी हुई है और एक ए_सी भी लगी हुई है।